वह स्टेज है जोकि बहुत बढ़िया सजाये है फ़ूल -ऊल से टेन्ट -ऊन्ट लगाये के पर्दा- उर्दा भी है और बीच में एक बड़ा -सा कुर्सी वाला है जो दुल्हा लोग दुल्हा- दुल्हिन बैठ --